सी और C में अरैज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अरै क्या है
अरै की घोषणा करना
अरै का इनीशिलाइजेशन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
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104 जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
अरै के परिचय के साथ शुरू करते हैं
अरै समान डेटा टाइप के एलिमेंट्स या डेटा का संग्रह है
अरै इंडेक्स 0 से शुरू होता है
पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 में संचित है
यहाँ तीन प्रकार के अरैज़ हैं160 सिंगल डाइमेंशनल अराय सिंगल डाइमेंशनल अरै
त्वो डाइमेंशनल अराय टू डाइमेंशनल अरै और multi डाइमेंशनल अराय मल्टि डाइमेंशनल अरै
इस ट्यूटोरियल में हम सिंगल डाइमेंशनल अरै पर चर्चा करेंगे
देखते हैं कि सिंगल डाइमेंशनल अरै कैसे घोषित करें
इसके लिए सिंटेक्स है data टाइप नामे ओएफ थे अराय अरै का नाम और साइज उदाहरण यहाँ हमने घोषित किया है एक इन्टिजर अरै स्टार जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं
अरै इंडेक्स स्टार 0 से स्टार 4 तक शुरू होगा
हमने अरै की घोषणा देखी
अब हम अरै का इनीशिलाइज़ेशन देखेंगे
इसके लिए सिटैक्स है160 data टाइप नामे ओएफ थे अराय साइज इस इक्वल टो एलिमेंट्स डेटा टाइप अरै का नाम आकारसाइज़ एलिमेंट्स के बराबर है उदाहरण यहाँ हमने साइज 3 के साथ एक इन्टिजर अरै स्टार को घोषित किया है
अरै के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3
यहाँ इंडेक्स स्टार 0 से स्टार 2 तक शुरू होगा
अब उदाहरणों पर आते हैं
मैंने एडिटर पर पहले ही प्रोग्राम टाइप किया है
अब मैं इसे खोलता हूँ
कृपया ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का नाम arrayसी है
इस प्रोग्राम में हम अरै में संचित एलिमेंट्स के योग की गणना करेंगे
अब मैं कोड़ समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फ़ाइल है
यह हमारा मेन फन्क्शन है
यहाँ हमने साइज 3 के साथ एक अरै स्टार को घोषित और इनिशीलाइज किया है
अरै के एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6
फिर हमने एक इन्टिजर वेरिएबल सुम घोषित किया है
यहाँ हमने अरै के एलिमेंट्स जोड़े हैं और परिणाम को सुम में संचित किया है
ध्यान दें कि 4 इंडेक्स 0 में संचित होगा 5 इंडेक्स 1 में संचित होगा और 6 इंडेक्स 2 में संचित होगा
फिर हम सुम प्रिंट करेंगे
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम निष्पादित करें
कृपया अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl Alt और ट कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस अराय डॉट सी स्पेस हाइपेन ओ स्पेस अराय और एंटर दबाएं
निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश अराय एंटर दबाएं
यहाँ आउटपुट प्रदर्शित होता है थे सुम इस 15
अब कुछ सामान्य एरर्स देखते हैं जो आ सकती हैं
अपने प्रोग्राम पर आएँ
मानिए कि यहाँ लाइन संख्या 4 पर हम कर्ली ब्रैकेट्स भूल गए
सेव पर क्लिक करें
देखें क्या होता है
टर्मिनल पर वापस आएँ
पहले की तरह कम्पाइल करें
हम एक एरर देखते हैं
इनवेलिड इनिशियलाइजर एंड एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर ओर ब्रैकेट बेफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट
यह इसलिए क्योंकि अरैज कर्ली ब्रैकेट्स में इनिशलाइज करने आवश्यक हैं
अपने प्रोग्राम पर आएँ
एरर फिक्स करें
यहाँ लाइन संख्या 4 पर कर्ली ब्रैकेट्स टाइप करें
अब सेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
पहले की तरह कंपाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब हम समान प्रोग्राम C में निष्पादित करेंगे
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
मैं यहाँ कुछ बदलाव करूँगा
पहले अपने कीबोर्ड पर एक साथ Shift Ctrl और एस कीज दबाएं
अब एक्सटेंशन डॉट सीपीप के साथ फ़ाइल सेव करें और सेव पर क्लिक करें
आईओस्ट्रीम के रूप में हेडर फ़ाइल बदलें
अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें
अरै का डिक्लरैशन और इनिशीलाइज़ेशन C में समान ही है
इसलिए यहाँ कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है
अब प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट में बदलें
फॉर्मेट स्पेसिफायर और बैक स्लैश एन डिलीट करें अब कॉमा डिलीट करें और दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें
यहाँ ब्रैकेट डिलीट करें
पुनः दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें और डबल कोटट्स में बैक स्लैश एन टाइप करें सेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस अराय डॉट सीपीप स्पेस हाइपेन ओ स्पेस अराय1 यहाँ हमारे पास अरै 1 है क्योंकि अराय डॉट सी फ़ाइल के लिए हम आउटपुट पैरामीटर अरै को ओवरराइट करना नहीं चाहते हैं
अब एंटर दबाएं
निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश अराय1
एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है थे सुम इस 15 हम देख सकते हैं कि यह हमारे सी कोड के समान है
अब हम अन्य सामान्य एरर देखेंगे
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
मानिए कि यहां लाइन संख्या 7 पर मैं टाइप करूंगा star1 star2 और star3 सेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
प्रॉम्प्ट क्लियर करें
पहले की तरह कंपाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हमे एक अनपेक्षित आउटपुट मिलता है
यह इसलिए क्योंकि अरै इंडेक्स 0 से शुरू होता है
अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
हम यहाँ देख सकते हैं अरै इंडेक्स 1 से शुरू होता है
इसलिए यह एरर दे रहा है
एरर फिक्स करें
यहां टाइप करें 0 1 और 2 सेव पर क्लिक करें
निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
पहले की तरह कंपाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जायेंगे
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरैज सिंगल डाइमेंशनल अराय सिंगल डाइमेंशनल अरैज घोषित करना
सिंगल डाइमेंशनल अराय सिंगल डाइमेंशनल अरैज इनिशीलाइज करना
उदाहरण intstar34 5 6 अरै के एलिमेंट जोड़ना उदाहरण सुम इस इक्वल टो स्टार 0 प्लस स्टार 1 प्लस स्टार 2 नियत कार्य के रूप में अरै में संचित एलिमेंट्स की भिन्नता की गणना करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
नीचे दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं